ये बिल्डिंग घर दिखाई दे रहा है दो ठो व्हाइट कलर में और ऑरेंज कलर में।

ये दरवाजा जो ट्रांसपेरेंट है दरवाजा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक बास्केट है वहां में बहुत सारा टोमैटो दिखाई दे रहा है।

फिर कीचड़ भी दिखाई दे रहा है उसका आगे साइड में।

तस्वीर में सात इंसान बैठा हुआ है व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के बीच वाला जो येलो कलर का शॉल लेके और रेड कलर का चुन्नी लिया है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा से।

तस्वीर में दो इंसान दिखाई दे रहा है एक खाते हुए दिखाई दे रहा है एक बैठते हुए दिखाई दे रहा है।

फिर निसान का शॉप दिखाई दे रहा है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है।

एक खिड़की दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में फिर दरवाजा दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में।

ये तस्वीर में एक इंसान दिखाई दे रहा है।

एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है वॉल में।

ये तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रहा है।